जिसके किनारे पे हरे भरे पेड़ पौधे है और दूर की तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी नजर आ रहे है।

और ये पीले रंग के डब्बो पर मच्छियों को सजा कर रख रखे हैं मच्छियां काली लाल और सफेद रंग की हैं।

इसके अंदर दो से तीन हिरन नजर आ रही है और कुछ सुखी झाड़ियां और सूखे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे --

बिल्डिंग दिखाई गई है और बिल्डिंग के आगे एक गार्डन है जो की वेल मेंटेन है है और ये हरी घास से ढाका हुआ --

यहां पर एक मंदिर को दर्शाया गया है जो की पहाड़ पर बना हुआ है ये मंदिर काफी पुराना नजर आ रहा है।

उन कपों पे सभी पे अलग अलग डिजाइन बनी हुई है वह पानी और चाय पीने के काम में आ --

इसमें एक एक्सिस बैंक को दर्शाया गया है जिसके सामने एक पार्किंग एरिया मे बहुत सारी कारे --

टेंट के नीचे कुछ कुर्सियां लगाई गई--

बहुत दूर एक पानी की टंकी भी नजर आ रही है।

जहां पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ओर सब्जी खरीद रहे हैं। एक निली कलर की शर्ट पहनकर एक आदमी सब्जी बेच रहा हैं।

और कुछ बहुत सारे गड्ढे भी नजर आ रहे हैं मिट्टी में खोदे हुए।

ये एक लड़का है जो कि नदी किनारे बैठ कर एक फोटो खींचा रहा है।

बुद्ध की तीन प्रतिमाएं दिखाई गई है जो कि काफी कलरफुल और अलग-अलग रंगों से मिलकर बनाई गई है इनके सामने एक हरा कलर का पेड़ भी नजर आ रहा है।

फूलों से बने दिल के सामने एक फोटो खड़ा होकर खींचा रहा है।

इस फोटो के अंदर एक गार्डन का एरिया नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

जो कि गमलों में और जमीन पर दोनों तरफ लगाए गए हैं।

इस फोटो में एक बिल्डिंग दरशाई गई है बिल्डिंग बहुत अच्छी डिजाइन से बनाई गई है।

जिस फोटो में एक थाली दिखाई गयी है जिसमें चावल है थोड़ा सलाद है और दाल और एक और सब्जी है जिसे हम पता नहीं कर पा रहे हैं।

और दूर सीढ़ियां लगी हुई है जिनके ऊपर चद्दर तने हुए हैं उन चद्दरो के नीचे आकर कुछ दर्शक बैठते हैं जो कि खेल का मजा लेते हैं।